और इसके आगे शीशे भी लगे हुए हैं।

यह एक परचून की दुकान है।

और इसमें बहुत सारे हिंडोले भी लगे हुए हैं।

यह एक बहुत अच्छी दुकान है।

यह एक व्यापार भवन है।

और दो लाइटें भी लग रही है।

यह एक बहुत अच्छा मदरसा है।